यहां सरस्वती विद्या मंदिर लिखा हुआ है और बहुत बड़ा गेट है और साइड में छोटा गेट है और अंदर में --

यह एक घर है और यहाँ पे बोहोत बड़ा फील्ड है और फील्ड में बोहोत सारे घास हैं।

यहाँ बहोत बड़ा पंडाल है और --

गाड़ा हुआ है और दो चार आदमी खड़े हुए देख रहें हैं और एक उधर गाड़ी रखा हुआ है और बहोत बड़ा एक घर है।

और यहाँ पे गुपचुप वाला खड़ा है।

हैं और दूसरे बैठे हुए हैं और एलईडी में एक लड़की अपने कपड़े को --